और तीन कुर्सियों के बीच में एक मेज है।

और दुकान की साइड में एक ए_सी भी लगी है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

और साइड में एक सूर्य लाइट भी लगा रही है।